यहाँ पे दिखाया गया है चावल आटा गेहूं और तरह-तरह के मसाले और --

और बीच में एक पुतला है जिसमें कुछ अ अ बनाया गया है ।

यह एक मंदिर है और यह मंदिर देखने में बहुत ही खूबसूरत है यह मंदिर काफी पुराना है।

यह एक पुस्तकालय है यहाँ पे हमें तरह-तरह की किताबें मिलती हैं।

के शिक्षक होते हैं। जो बच्चों को डांस के स्टेप बताते हैं। लोगो को डांस के स्टेप --

बोहोत अच्छी क्वालिटी के कपड़े दी जाती है। यहाँ पर बोहोत अच्छे दाम पे कप-कपड़े दी जाती है।